ये लोग एक छोटी से दो पहिया वाली गाड़ी की मदत से एक बड़ी सी फरसी को ले जाते हुये दिख रहे सामने जो बिल्डिंग है वो वाईट कलर की --